सामने स्टेज बना हुआ है आइट साइड पैड़ पौधे रखे हुए हैं।

शेल्फ बनी हुई हैं उस पर कुछ किताबें रखी हुई हैं ऊपर पंखा लटका हुआ है।

नमाज का पूरा शेड्यूल बना हुआ है कौन सी कब होगी।

एक जेंट टॉयलिएट लिखा हुआ है।

जिम की मशीने रखी हुई है स्ट्रेचिंग मशीन है जिस पर लोग भागते हैं।

एक ही कमरे में आइट साइड चद्दरें लगी हुई हैं ऊपर का सैट चद्दरों का डला है।

एक बिल्डिंग नज़र आ रही है उसके साइड में एक टनाटन ढाबा नज़र आ रहा है।

आइट साइड दो पहाड़ों के बीच में एक लड़का और एक लड़की हैं।

और ये लोग पहाड़ ऊपर बैठे हुए हैं।

कुछ कपड़े अलमारीयो में जमे हुए हैं।

बाहर बहुत बड़ा सारा गेट लगा है जिस पे टू-लेट फॉर गर्ल्स लिखा हुआ है।

एक ग्राउंड है हरी घास नजर आ रही है बहुत बड़े-बड़े सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

उसके ऊपर कॉट पहना हुआ है एक जैकेट टाइप की कुछ पहनी हुई है।

साइड में एक गोल गहरा बना हुआ है जिसके ऊपर पेट्रोल पंप का लोगो लगा हुआ है।

वाइट कलर की पुताई की हुई है गोल्डन कलर की पुताई है नीचे टाइल्स लगे हैं।

कुछ लोग उसके फोटो निकाल रहे हैं ऑटो खड़े हैं बहुत सारे--

और एक डंडा लगा हुआ है जिस पर लाइटें लगी हुई हैं।

घड़ी लगी हुई है लाइट के खटके लगे हुए हैं।

बहुत खूबसूरत सा मौसम हो रहा है बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

नीचे हरी घास है जिस पे तीन लड़कियां जा रही हैं।

सामने बहुत खूबसूरत सा एक घर बना है जो लाल कलर का और गोल्डन कलर का है।

एक लड़का बैठा हुआ है उसके पीछे एक वाटरफॉल है।

एक लेडीज खड़ी हुई हैं जिन्होंने रेड कलर का दुपट्टा ओड़ा हुआ है।

एक टेबल है उसके ऊपर व्हाइट कलर और गाजरी कलर का कपड़ा लटका दिया है।

वंक बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

जो टोपी लगाए हुए हैं मोबाइल चला रहे हैं।

एक लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ है जो ब्लू कलर का कॉट पैंट पहना हुआ है।